बहुत अच्छा सारी ली --

एक लेपटॉप जैसा भी रखा हुआ है।

और साइड - साइड में बहुत सारे चेयरस लगे हुए यहां पे ब्लू और व्हाइट कलर में

जो संतरा कलर और ब्लैक कलर का है।

और साइड में भी कुछ पेड़-पौधे थोड़ा-थोड़ा दिख रहे हैं।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

यहाँ पे एक दुकान दिखाई दे रहा है |

और इस रोड पर वाइट कलर से चिन्ह बनाया हुआ है |

बड़ा में सब चीज़ थोड़ा सा छोटा है |

और यहाँ पे कुछ --